पेड़ है एक रोड है और अंदर एक स्कूल है स्कूल मे स्टूडेंट है।

और मार्केट मे कुच हो रहे है और सारे शॉप ओपन है और मार्केट ओपन है।

और क्लौड्स ब्लू-ब्लू शो हो रहा है। काफी अच्छा मौसम हो रहा है और सनसेट हो रहा है। बहुत सारे लाइट के टॉवर शो हो रहे।

ये हॉटेल मयूर का अं एंट्री गेट अंदर जाने का रास्ता है पास मे से ही सड़क निकल के गई है।

एक बिल्डिंग के बाहर का नजारा है नीचे दो स्कूली रखी हुई है हरे-भरे पेड़-पौधे लग रहे ये है।

रात का समय है बिल्डिंग दिखाई दे रही है बल्ब जल रहे है पेड़ अ लगा हुआ है।